इसके अंदर फिश दिखाई रही है कई फिश है मेरे भाई लोग जो काले कलर की दिखाई दे रही है और लाल कलर की दिखाई दे रही है कैरट दिखाई दे रहा है।

पीला कलर दिखाई दे रहा है लाल कलर दिखाई दे रहा है। लाल कलर दिखाई दे रहा है।

मेरे भाई इस में आपको दो सफ़ेद कलर की सी टेबल दिखाई दे रही ट्रे है और दो--

मेरे भाई इसके अंदर एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है भाई जिसमे--